इस फोटो में मुझे बहुत सारी बाइक और कार दिखाई दे रही हैं।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

इस फोटो में मुझे कपड़े दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो मे मुझे फीसलपट्टी दिखाई दे रहीं हैं।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

इस फोटो में मुझे लोहे की जालियाँ दिखाई दे रही हैं।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

बहोत सारे बॉक्स दिखाई दे रहे हैं।

फोटो में मुझे लाइट दिखाई दे रही है।

इस फोटो में मुझे चारों तरफ बाउंड्री दिखाई दे रही है।

इस फोटो में मुझे पुरुष दिखाई दे र--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

इस फोटो में मुझे बच्चे दिखाई दे--

फोटो में मुझे बड़ा पोस्टर दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में मुझे खिड़की दरवाजा दिखाई दे--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

इस फोटो में मुझे कैफे दिखाई दे रहा है।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

इस फोटो ने मुझे मैदान दिखाई दे रहा है।